एक बैनर लगा हुआ है जिस पे अपना सोडा लिखा हुआ है।

एक पानी का बोतला है वो कुर्सी पर बैठा हुआ है।

बाहर एक गाड़ी लगा है डस्टबिन है कुछ आदमी नजर पड़ रहे हैं।

पर रहा है बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं।

बड़े-बड़े पेड़ नजर पड़ रहे हैं एक पोल का खंभा नजर पड़ रहा है।

और बहुत सारे गुब्बाडे है बगल में शीशा लगा हुआ है।

बहुत सारे साइकिल हैं और पोल के खंभे हैं।

सिटी सेंटर सैलून गोपालगंज लिखा हुआ।

कुछ आदमी नजर पर रहा है और --

जो कलर किया हुआ है हरे भरे पेड़ नजर पड़ रहे हैं।

बहुत सारे कुर्सी लगे हुए है कुर्सी का कलर रेड ल --

इसमें बैनर दिखाई दे रहा है कुछ मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है।

बहुत सारे घर बने हुए हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं।

एक बैनर लगा हुआ है जिस पे सुमित चाइनीस लिखा हुआ है।

नदी नजर पड़ रहा है एक बॉस का खंभा है।

छोटे घास है बड़े बड़े कुछ पेड़ नजर पड़ रहे --

बहुत सारे कुर्सियां हैं बहुत सारे सोफे हैं।